एक बड़का हईसन पोल ह का ओपेरा में।

यहां सब सामान के दोका --

और सब आदमियाँ बइठ के देखब करो है के बहरा में एगो आदमी है के बहरा में मोटर साइकिल --

कम से कम पंचानवे हजार मे बेचय हेते टी.वी.एस. एगो सीसा लगल हेय टी.वी.एस. बहुत --

और बहुत भीड़ लगल हके कौन चीज ते लिखल हेय वेलकम लिखल हके अच्छा लगय हेय देखे मे बहुत भीड़ ह --